एक दुकान है जो काफी सजी हुई है। बैलून लगे हुए हैं गोल्डन और सिल्वर कलर के।

इन्फॉर्मेशन भी लिखी हुई दिखाई दे रही है।

यह एक बैंकेट हॉल का दृश्य नजर आ रहा है जिसमे काफी सारी कुर्ती कुर्शिया सोफे परदे लगाये दिखाई दे रहे हैं। .